यहाँ पर हमे एक मंच दिखाई दे रहा है जहाँ पे एक लड़की सफ़ेद रंग के कपड़े पहनी है वह पारंपरिक वेशभूषा और सिंगार में है|

इस लड़की के ठीक पीछे एक बोर्ड भी दिखाई दे रहा है जिस पर कुछ लिखा हुआ है के पीछे एक नीले रंग का पर्दा दिखाई दे रहा है ये लड़की आकर्षक मुद्रा में खड़ी है|

गेट के अंदर हमे एकझोपड़ी नुमा घर दिखाई दे रहा है और उसके अंदर एक व्यक्ति जाता हुआ भी दिख रहा है|

यहाँ पर हमे एक विमान दिखाई दे रहा है जो अपने उड़ने की तैयारी में है यह एक मैदान में खड़ा है जहा पे उसके कई यात्री भी खड़े है जो विमान मे चढ़ रहे है।

इस चित्र मे हमे कुछ वयक्ति दिखाई दे रहे हैइन व्यक्तियों के अलावा यहां पर बहुत सारी साईकिल रखी हुई दिख रही है।